और कॉपी पेन वन बेट बॉल सब कैरम बोर्ड सब मिलेगा यहाँ लग रहा है जैसे कि दुकान ही है।

यहाँ पस भाई साहब लोग सब लोग बाहर में है और घूम फिर रहे टेहेल रहे है।

इनके टीचर्स सिखा रहे है और यहाँ पस लग रह है डी.जे वि-जे का भी सेट-उप हो पूरा और छोटे-छोटे बच्चे डांस करने के लिए सिख रहे है और बच्चियाँ भी बहुत हैं।

रहे हा और यहाँ पर भाई साहेब कार का रिपेयरिंग कर रहे है और --

और ये भाईसाहब अपना दुकान चला रहा है बेग टाँगे हुए है और ये दूसरा कोई है और यहाँ पास--